यहाँ पर पहले अंग्रेजो में युद्ध लड़े जाते थे तो इस दीवार को पार करना नामुमकिन था ये बहुत ही बड़ी दीवाल--

यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जो भी इशू होते है वो ये कृषि विज्ञान केंद्र नागौर में यहाँ उसको सॉल्व की जाती है और जो भी इशू वगेरा कृषि खेती करने में आते है उन सब में --

हेलो दोस्तों आप राजस्थान के नागौर जिले में हैं नागौर जिले का हाउस है ये हाउस मुस्लिम का है एक यहाँ पर आप --

हेलो दोस्तों आप राजस्थान के नागौर जिले में है ये नागौर जिले की बिल्डिंग है ये काफी ज्यादा फेमस बिल्डिंग है ये टूरिस्ट प्लेस यहां पर लोग देखने के लिए आते है।

आप देख सकते है इसका कितना सूंदर नजारा है यहां लोग आते रहते है पेड़ पौधे भी लगे है ए गमलो में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे है।

हेलो दोस्तों आप राजस्थान के नागौर जिले में है ये नागौर जिले की मस्जिद है इसके सामने पेड़-पौधे हैं।

यहाँ ये मुसलमानो की हैं यहाँ पर ये मुस्लिम लोग यहाँ पर मन्नत माँगने के लिए आते हैं जो भी यहाँ मन्नत माँगने के लिए आते हैं वो पूरी --